गुरुद्वारे में एक लाल रंग का घड़ी भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह चित्र एक खुला मैदान का है।

यह चित्र एक बगान का है बगान में कुछ फूल और कुछ सब्जियां लगी हुई नजर आ रही है।

इस झील में काफी तेजी से पानी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में बहुत बड़े बड़े चट्टानें भी दिखाई दे रही है।

उस रैक में बहुत सारे शर्ट और जींस रखे हुए दिख रहे हैं।

इस चित्र में एक बड़ा गेट भी दिखाई दे रहा है।

यह एक पेट्रोल पंप का चित्र है।

एवं इस चित्र में एक झालर भी दिखाई दे--

यह एक मछली दुकान का चित्र है।

यह एक फूलों से बना गेट का चित्र है।

यह एक चिकित्सालय का चित्र है।

एवं इस चित्र में कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

चित्र में कुछ लड़कियां आप प्रोजेक्ट बनाते हुए नजर आ रही है।

इस चित्र में बहुत सारे रैक बने दिखाई दे रहे हैं।